दरवाजे पर जाली दिखाई दे रही है। हल्की सी जंग भी दिखाई दे रही हैं। इस पर बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई है।

सामने देखने पे यहाँ पे नीचे भी सामान रखा हुआ हैं। उपर पंखा दिखाई दे रहा हैं। दीवार दिखाई दे रही है जो कि गुलाबी रंग की हैं। शटर दिखाई दे रहा हैं। जो कि नीले रंग का हैं।

सड़क दिखाई दे रही हैं। सड़क पर मोटे-मोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। बस दिखाई दे रहे है बस पीले रंग की हैं। जिस पर माला टंगी हुई हैं।

बाहर की तरफ स्पीकर दिखाई दे रहे है। हरे रंग का दीवार दिखाई दे रही है। उसके बराबर मे एक मकान दिखाई दे रहा है। जिस जो कच्चा ईंटों का बना हुआ है। एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की मोटरसाइकिल --

नीचे अलग -अलग रंगों के मंडप सजा हुआ हैं। इसमे गुलाबीनीले हरे पीले पट्टियाँ जा रही है लोग कुछ बैठे हुए हैं। कुछ लोग पूजा कर रहे हैं नीचे फर्श भी दिखाई दे रहा हैं।

सब पूजा कर रही है। बच्चे दिखाई दे रहे है। पीछे बड़े-बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे है। ठंड का मौसम दिखाई दे रहा है। नीचे फर्श दिखाई दे रहा है। जिस पर मिट्टी फैली हुई है।

पर क मेज़ दिखाई दे रही है जो कि भूरे रंग की हैं। इसपे प्लेट रखी हैं। प्लेट सफेद रंग की हैं। इस पर एक पराठा रखा हुआ है जिसमे मे कुछ भरा हुआ हैं।

यह सेका हुआ पराठा रखा है। यह ब्राउन कलर का है। पीछे दीवार दिखाई दे रही है जो की काले रंग की है। यह पराठा सफेद रंग की पिच द-स्तरी में रखा हुआ है।

व एक दीवार दिखाई दे रही हैं। दीवार पर गोल्डन कलर की पट्टिया लटकी हुई हैं। जिसके उपर बहुत सारे गु-गुब्बारे लगे हैं। गुब्बारे मारून कलर के हैं।

यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ हैं। जिसके हाथ मे स्टैन्ड दिखाई दे रहा हैं। स्टैन्ड पर एक कैमरा लगा हुआ हैं। बराबर मे एक मकान बना हुआ है जो कि इंटों का बना हुआ हैं।

यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है। कमरे का पीछे तरफ टाइल्स बनी हुई है। दरवाजा दिखाई दे रहा है। दरवाजा फूलों से सजा हुआ है। घंटी लगी हुई है।

ऊपर की तरफ कुछ तस्वीरे लगी हुई हैं। एक टी_वी लगा हुआ हैं। सामने सामान भी रखा हुआ है मिष पर।

दुकान का दृश्य है इसमे बहुत सारी रैक बनी हुई है। रैको में बहुत सारा सामान रखा हुआ हैं। कुछ सामान बाहर की तरफ भी लटका हुआ है।

एक ल आदमी खड़ा हुआ हैं। उसके बराबर में दो औरते खड़ी हुई है। पीछे की दीवार दिखाई दे रही है जो की सफेद रंग की है। पीछे जाली भी दिखाई दे रही है।

कुछ कागज का सामान रखा हैं। महिला खड़ी हैं। जिसने साड़ी पहन रखी हैं। मास्क लगा रखे हैं। बहुत ज्यादा मात्र मे बच्चे बैठे हुए हैं। पीछे की खिड़की दिखाई दे रही हैं। दीवार दिखाई दे रही है जो कि सफेद रंग की है जिस पर लाल रंग की पट्टी छा--